बाल कटिंग कर रहा है।

इसमे चाउमीन मोमोस डोसा चाय --

और तीन तल्ला है ये ।

और एक आदमी बैग टांगा हुआ है। व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है और भी कई सारे लोग खड़े हुए हैं उसके पास |

पॉँच नाव दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक नाव पे दो लोग हैं। एक नाव पे दो लोग और एक नाव पे एक लोग ही हैं।

दोनों अलग-अलग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आदमी भी कुछ कर रहा है। औरत भी कुछ कर रही है।

सबसे ज्यादा इसमें चट्टानें दिखाई दे रही है। छोटे बड़े सभी प्रकार की चट्टानें हैं।

रंग पेंट हुआ है। बाकी सारी मूर्तियाँ सिर्फ मिट्टी की ही हैं।